और इस हरयाली के बीचोबीच कुछ प्लाट सा नज़र आ रहा है जहाँ पे अगर बहुत ध्यान से देखे तो शायद कोई पशु है अगर कोई --

इमारत सी लग रही है ग्रे रंग की दीवार है उस पर एक पोस्टर लगाया जैसे कोई फिल्म का पोस्टर हो निश्चित ही यह कोई थिएटर है मूवी थिएटर जहां पर लोग मूवी देखने आते--

इस पिक्चर में हम देख सकते हैं बहोत ही खूबसूरती से सजाया गया है एक जगह दिखाई गई है जिसके ऊपर बोर्ड लगा है। पिंड दुबई --

यहां हम देख सकते हैं। रिसेप्शन बना हुआ है। जहां पे कोई लेडी या जेंट्स बैठते हैं जो आने वाले व्यक्ति का स्वागत करते हैं।

यहाँ हम देख सकते हैं कुछ दुकानें लग रही है। जिनके ऊपर घर बने हुए है निश्चय ही ये मार्किट एरिया है। जहाँ पे लोग ऑन रोड घर और मकान एक साथ बनाते हैं।

पुल की जैसी संरचना दिख रही है आपको बता दे की पुल ही है क्योंकि कुछ लोग उसके ऊपर चलते हुए दिख रहे हैं गाड़ियां भी दिख रही हैं चलती हुई है एक बड़ा सा पुल है जो कि नदी के बीच में अक्सर बनाए जाते हैं।

देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सनराइज या सनसेट का नजारा है।

तो जाहीर सी बात है लिखा ही है साफ-साफ शॉप है यानी छोटा-सा रेस्टुरेंट है जहाँ लोग टी कॉफी पीते हैं।